ये एक इवेंट की फ़ोटो है जहाँ पर एक हॉल में बहुत सारे लोग बेठे हुए हैं सभी ने लाल कलर की कुर्सी पर बेठे हुए है।